यहां पर आदमी आकर अपने समय गुजार सकते हैं पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

इह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गुल गुलमोहर हॉस्पिटल ।

यहां पे दो चेयर है।

पीछे एक ऑटो आया हुआ है शायद सामान ले देने या लेने आया हुआ है।

इसका नाम है इंडिया होटल नीचे एक कपड़े का दुकान है जिसका नाम है मान्यवर।

बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे गिर रहे हैं जो देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।

यहां पे नौ से दस चेयर रखे हुए हैं।

जो महाराष्ट्र में मौजूद है जिसको महाराष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है जो कि औरंगाबाद भी कहा जाता है उसे।

यहां पे तीन नांव दिख रहे हैं जहां जिसमें से एक नांव पूरा लोगों से भरा हुआ है।

जिस जहां पे काफी सारे ए_सी है जिसमें से दो एक हमें दिख रहे--

दो तीन बड़ा सा सोफा है उसके बीच मे एक सफेद कलर का--

ये एक कोई बहोत बड़ा सा रूम है जहां पे डेकोरेशन किया जा रहा है कोई चीज का आयोजित करने के लिए।

जहां पे व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं।

उस पीछे एक बहुत बड़ा सा व्हाइट बोर्ड है जिसमें उसके बगल में एक डेस्क रखा हुआ है।

काफी सारे बच्चे एवं काफी सारे महिला और पुरुष जो की खड़े हैं।